ये एक छोटा सा रेस्ट्रॉन है। इसमें कॉफी और चाय और केक --

और कुछ लोग टहल रहे हैं। कुछ लोग घूम रहे हैं और कुछ लोग सामान लेते हुए दिखाई दे रहे हैं।

ये हॉस्पिटल है और यहाँ पर हम सभी लोग अपने इलाजों के लिए आते हैं हॉस्पिटल हमारे जीवन बोहुत ही उपयोगदायक है।

ये कोई छोटा सा होटल है खाने पीने का और इसमें --

ये हमारे पेट्रोलियम गैस यस एजेंसी है और यहाँ पर हरे भरे घास लगे है और पेड़ पौधे भी है और --

और यहाँ उसके बगल में यहाँ पे और पेड़-पौधे हैं और कुछ लोग बैठे हैं और कुछ लोग अपना वर्क कर रहे हैं।

कुछ बच्चे झूले झूल रहे हैं और कुछ बच्चे टहल रहे हैं और कुछ बच्चे एन्जॉय करते दिख दे रहे हैं। कुछ बच्चे खेल-कूद करते दिखाई दे रहे हैं।